व्हाइट कलर में है और जो ओ ओ पेड़- पौधा बहुत सुंदर दिख रहे है।

यह बस टाइप का लगता है वहाँ मकान है बहुत बड़े वाला वहाँ लड़की लड़का सब खड़े है जो --

ये का दिखाई दे रहा है जैसे की हमारा देहात में तो नहीं है कोरबा बिलासपुर में है वैसे टाइप का बहुत सुन्दर यहाँ रेस्टारेंट है देखने का --

हां यहाँ पर बहुत सुन्दर बिल्डिंग है जैसे मेरे को तो लग रहा है ताजमहल टाइप के या सिटी बिल्डिंग है यहाँ पर रूम में किराये में रहते है लोग --

जैसे के रतनपुर में भगवान रहते है वैसे टाइप के बहुत सुन्दर भगवान अउ निम्बू पूरा चढ़े हुए है फूल चढ़े हैं अउ हरा-हरा में ओकर सुहागा चढ़े हुए है ऐसे टाइप में भगवान बहुत सुन्दर दिखे है भगवान बहुत सुन्दर --

ये बहुत सुंदर दिखे-- ऐसे टाइप के अच्छा जो हमारे क्षेत्र में जो केंद्र राज्य से शादी करते है ना तो आते है बेड बेड तो वही ताला लगा है ऐसे टाइप के यहाँ भी ताला लगा है कुछ--

पांच फ्लोर है पांच फ्लोर है दोस्तो इस बहोत सुन्दर दिख रहा है क्या बताऊं आपको खिड़की तो दोनो पार्क है ऐसे हमारे क्षेत्र में तो ज्यादा नही है बिल्डिंग बिलासपुर रायपुर में है बहुत सुन्दर दिख रहे दोस्त--